आप आसमान है दो घर दिखाई दे रहा है और एक जाने का घर जाएं घर के पास जाने का रास्ता दिखाइए--

उसने कान में इयरफोन लगा रखा है।

इस चित्र में हमें पहाड़ दिखाई जा रहा है।

इस चित्र में हमे एक मंदिर दिखाया जा रहा है बहुत पेड़ लगे हुए है।

नीला आसमान है काला गेट लगा हुआ है।

यह एक होटल का कमरा दिख रहा है जहां टी_वी लगा हुआ है और दो पलंग है।

पीछे एक मकान दिखाई दे रहा है जिसके पीछे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

इस चित्र में हमें एक पुल दिखाई दे रहा है पीछे पहाड़ है यहां हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं नीचे नदी बह रही है।